सी एल सोनी सी ओ करके नाम दुकान का का नाम हैजो कि दुकान बहुत ही अच्छा अति सुंदर है जो कि देखने में लग रहा हैआगे से.--

बहुत ही अच्छा तरीका से सामान रखा गया है जो कि देखने में अति सुंदर और बहुत ही सुंदर है।

दुकान के अंदर रेड कलर का दीवान में कुछ रखा गया हैजो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

यहां से हम लोगों को सामान कुछ लेना चाहिए ऐसे ही सजाना चाहिए दुकानदार को जोकि देखने में--

जो कि यहां पे कुछ-कुछ क्या दुकान है मालूम नहीं चल रहा हैमगर पता चलता हैये दुकान है देखने से घर में टाइल लगा हैघर अच्छा--

और यहाँ फोन में देखने में अच्छा और अति सुंदर लग रहा है तो हम सब को बता दे कि यह फोटो अच्छा है और अति सुंदर है तो यह --

यह मिठाई भूजा का दुकान है जो कि खाने में लाभदायक है जो यह अच्छा दुकान है यहां पे सजाया गया अच्छा।

जो कि अच्छा-अच्छा खिलौना है अच्छा दुकान है अच्छा दिखने में लग रहा है बाइक का फोटो है बुलडोजर का फोटो है।

क्रोम एम्स दरभंग लाल एक यहीं पे कहीं पे रोड पे लिखा हुआ है जो कि नाम नहीं पढ़ने जा रहा है।

यह एक फील्ड है जोकि फील्ड मे कचरा डाला गया है कचरा को साफ करने के लिए मशीन है मशीन में जो कचरा साफ होता--

यहाँ कचरा का ताल है ताल पे दो आदमी खरा है जो कि देखने में छोटा लग रहा है मतलब एक आदमी खरा है।

दिखने मे दो आदमी लग रहा था यहां पे कचरा साफ करने के लिए यहां पे कचरा वाला मशीन है।

यहां पे जिम क्लास है जिम में मतलब बायाम कर रहा है लोग यहां पे कितने लोग हैं गिन कर बताते हैं।

इस स्टाइल से फोटो लग जायेगा जो देखने में अच्छा है अमेजिंग लग रहा है।

यहाँ एक घर है घर के पीछे हरियाली है जो कि हरियाली देखले में अच्छा लग रहा है।

ये देखने में अच्छा लग रहा है मगर यहां पे खेलना चाहिए सभी को ये अमेजिंग फोटो है यहां पे फील्ड भी है यहां पे देखना चाहिए ।

फोटो क्लिक करवाई है जो कि देखने में अच्छा लग रहा है येलो कलर का लड़की लोग ज्यादातर कपड़ा पहनी हुई है जो कि बहुत ही अच्छा हैडीजे लगा हुआ है बॉयज लोग हैं।

बुढ़िया लोग हैं लोड़की लोग है बहुत ही ज्यादा फोटो अमेजिंग है देखने में सुंदर है यहां पे कुछ लिखा हुआ हैबंगाली में जो कि देखने में अच्छा और अमेजिंग लग--

यह एक घर है यानी होटल है होटल में दो एक ओनर है होटल का।

एक आदमी मोबाइल पे बात कर रहा है हरियर कलर का बोल रहा है।